और ये एक हॉस्पिटल में खड़े हैं जो विक्टरी के साइन के साथ खड़े हैं ।

यह एक काफी बड़ा-सा सफेद रंग का बिल्डिंग है।

और पेड़ इतनी शानदार तरीके से खड़ा है पतले पेड़ लम्बे पेड़ उच्चे पेड़ --

और यह सामान ये तो गाड़ी खड़ी गाड़ी है ।

और उनकी साज सज्जा बहोत अच्छी तरीके से की गई --

ये एक कोई हॉस्पिटल है और अअ ये कार पार्किंग की गई है स्कूटी पार्किंग की अअ की गई है बाइक पार्किंग की गई है।

यहाँ पे जंगड़ जंगल झाड़ नजर आ रहे हैं बिना पत्तो का पेड़ है।

उम्म जरूरत महसूस हो वो सारा सामान आप यहाँ से खरीद सकते है लाइट की भी व्यवस्था इस फोटो --

छोटे-छोटे साईकिल अ बड़े -बड़े साईकिल विभिन्न स्टाइलो के साईकिल --

और अअ एक मेला लगा हुआ है।

बैंक ऑफ़ इंडिया जो बिल्डिंग है वो ब्लू कलर का है।

और लाइट का इंतजाम है और जो ऑफिस है छोटा सा ऑफिस बनाया गया है काफी सुन्दर है।

ये रोड के सामने ये इ-रिक्शा का विभिन्न प्रकार के ये जो इ-रिक्शायें हैं वो खड़े हैं।

ए उ घीसकाने वाला एक बैग रखा हुआ है लाल कलर का और ऊपर से जो लाइट की जो व्यवस्था है बहोत सारे बल्ब जल रहे है।

यह एक वॉल्वो बस है पीले रंग का बस और चूंकि वॉल्वो बस वॉल्वो बस का ये पिछला भाग है ।